नमकीन का स्टाल लगा हुआ है जिनका नेम पतंजलि टेस्टी नमकीन --

यहाँ एक गाडी खड़ी है जो सुधरने के लिए खड़ी है। इसका टायर बाहर निकला पड़ा है।

यहाँ पर सब अपने-अपने मेट बैठे हैं झंडे जैसा एक --

बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं तीन सफदे गाड़ी खड़ी हुई है एक ग्रीन रंग की गाड़ी खड़ी हुई है।

यहाँ पर बहुत सारे जेब्रा खड़े हैं । यहाँ पर --

दूर बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे --

नीले रंग से वन फाइव सेवन फाइव है।